रंगबेरंगी जमीन दिख रही है।

पेड़ पर लकड़ी की सीढ़ी दिख रही है। गाड़ियाँ बाइक खड़ी दिख रही हैं। छोटे-छोटे पेड़ दिख रहे हैं।